सारी लाइटिंग लगी हुई दिखाई दे रही कार आते-जाते हुए दिखाई दे रही कुछ लोग खड़े हुए आते जाते दिखाई दे रहे है बादल दिखाई दे रहा है वह चित्र दिखाई दे रहे है मस्जिद दिखाई दे रही--

मछली की दिखाई दे रही कांटादिखाई दे रहा है मार्क लगा है बहुत सारी लेडिस जैसे खरीदते हुए दिखाइए।